जैसे कि हम चेक कर पा रहे है बहुत ही बड़े-बड़े स्टोन्स है जिसके अंदर एक आदमी सेल्फी क्लिक करने की कोशिश कर रहे एक लड़का अंदर जाने की कोशिश कर रहे।

जो लाइट कलर का पेंट्स डाला हुआ है उसमें कुछ कलर निकल रहे है स्क्रीन से ब्लैक और ग्रीन और --

पिंक कलर के साथ अपना नीचे कवर किया गया है उसके हाथ में एक और आदमी है उसने चेक टी-शर्ट डाली हुई है |

जैसे की चेक कर पा रहे है एक शादी का सीन है जहां पर दूल्हा-दुल्हन बैठे हुए हैं पंडी जी बैठे हैं उनके फेरे हुए हैं अभी पीछे औरतें खड़ी हुई है।

चर्च के अंदर ग्रीन कलर के कर्टेन्स हैं ऊपर बहुत सारे स्टार और डेकोरेटेड आर्टिकल्स लागाए गए हैं।